बाल्टी दिखाई दे रही है।

अम्म यहाँ हरी घास दिखाई दे रही है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

आसमान दिखाई दे रहा है।

पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

जिसमें काँच के सीसी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक दिखाई दे रही है एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है कार खड़ी दिखाई दे रही है।

हम्म यहाँ कुछ मैदान दिखाई दे रहे हैं।